इतना अच्छा लग रहा है कि मत पूछिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज जो भी है बहोत अच्छा है बहोत सुन्दर है यहाँ देखिये झाड़ू लगा रहे है सफाई सुथरा रख रहे है साफ़-सुथरा कर के रख --

गाड़ी-घोड़ा के भीड़-भाड़ तो नहीं है लेकिन अ रात का समय है तो क्या --

ये बस भी बहुत अच्छा है इतना अच्छा बस है की आप लोग भी देख के हैरान हो जायेंगे कितना सुन्दर बस हैं।

कितना सारे बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे है कूद रहे है मस्त लग रहा है इधर धुप उगल हैं।